उसके आस पास हरी भरी घास फैली हुई दिखाई दे रही है।

ग्राउन्ड में कुछ पेड़ लगे हुए है एक पेड़ में ऑरेंज कलर के फूल खिल रहे हैं और उसके नीचे दो नीले कलर के ड्रम रखे हुए दिखाई दे रहे हैं ।

इस तस्वीर मे मुझे एक फल की दुकान दिखाई दे रही है। जिसमें सारे फल टोकरी और केरट में रखे हुए है। जिसमे काले अंगूर अंगूर --

तस्वीर में एक ग्रॉउंड दिखाई दे रहा है ग्रॉउंड के बीचो बीच एक सफ़ेद कलर का छोटा सा घर बना हुआ दिखाई दे रहा है घर के साइड में एक लगी हुए दिखाई दे रहे है। उसी ग्राउंड में --

इस तस्वीर में एक मेला सा भरा हुआ दिखाई दे रहा है। इस मेले में बहोत से झूले दिखाई दे रहे हैं। ए --